सुंदर व अच्छा प्रतीत हो रहा मन्दिर भगवान श्री राम का है और इस मंदिर का रंग सफेद रंग का है और --

उनके खाने बने हुए हैं जिनके अंदर काफी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं इस लाइब्रेरी यह लाइब्रेरी सिर्फ पुस्तकों से भरी हुई है।

इनके चेहरे धूप में मुझे लाल दिखाई दे रहे हैं और वो धूप में निरंतर कार्य कर रहे हैं और कुछ सीमेंट के थैले भी दिखाई दे रहे हैं।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

उनमें से एक महिला बैठी हुई है जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है।

आगे आकर एक आदमी जिसने मेहरून कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और उसके आगे की ओर एक तालाब दिखाई दे रहा है जोकि पानी से भरा हुआ है वह तालाब काफी सुंदर --

कमरे की दीवारों का रंग प्राय सफेद रंग का दिया गया है और उसके अंदर एक --

जिनमें से अधिकत्तर कारे मोटरबाइक्स ट्रक इत्यादि खड़े हुए नजर आ रहे है।

लड़कियां लेडीज व पुरुष नजर आ रे हैं जिनका मुंह दूसरी ओर --

इस तस्वीर में मुझे एक अमूल नाम से एक दुकान का बैनर दिया गया है।

और वह तीन लोग मा उनके हाथ में कुछ सामान भी दिए गए हैं और कुछ ईंटों के टुकड़े --

इस तस्वीर के अंदर मुझे एक मारुति सुजुकी के अंदर एक नीले रंग की कार दिखाई दे रही है।